और एक बड़ा सा बैनर लगा है जो की लाल पीला और काला रंग का है।

अंदर दुकान में लाइटें जल रही है जो की अलग अलग रंगो की है।

इस फोटो में एक लंबा सा रोड है जो कि काले रंग का है उस पे सफेद रंग की धारी गई है।

इस फोटो में एक बड़ा सा शोरूम है जो की बाइक का है।

उसने गर्दन पर ओरेंज रंग की गमछी पहनी है।

पीले रंग का है बीच में एक बड़ा सा गेट है।

बहुत सारे आदमी व औरतें हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है इसके जमीन पे टाइल्स लगा है।

और दीवार का रंग गुलाबी है।

ये फोटो एक चर्च का जिसमें पीछे जीसस क्राइस्ट है।

ग्रे जैसा है और लाल है बीच मे और सफेद भी है।

टेबल लकड़ी और शीशे से बना है।

चेयर काले रंग का है उसे पर एक मॉनिटर है।

ये दृश्य एक ग्लास --

इसमें बहोत सारे शीशे पड़े हैं।

और नीचे घास बना है दीवार पे--

इसमें आसमान और पहाड़ का रिफ्लेक्शन बन रहा है।

आसमान पूरा नीला और सफेद है।

इस फोटो में एक दुकान है।

टेबल का रंग सफेद है और बाहर से इस पे सनमाइका लगा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग जैसा बना है जिसके बाहर सीढ़ी लगा है जो की गोल-गोल है और उसमें एक गेट है नीचे से।

और इसमें बहुत सारे बॉक्स में समान हैं जो की--

जो कि अलग अलग तरह के हैं कुछ गोलकर कुछ स्क्वायर शेप का।

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉल है इसके जमीन पर--

दीवार का रंग सफेद है सीलिंग का भी रंग सफेद है।

इस फोटो में एक दुकान है जो की नीले रंग का--